यह एक जू है इसमें हिरण है शायद बारासिंघा भी है और पेड़ है बहुत अच्छी जगह लग रही है।

अं ये एक बहोत सुंदर जगह है बैठने के लिए ड्राइंग रूम जैसा लग रहा है।

और अ बहुत साफ सुथरा लग रहा है ग्रीनरी है यहां पे बहुत सारी और स्कूटरीज बाहर खड़ी हुई हैं।

और एसर का कुछ साइन बोर्ड सा लगा हुआ हैं ऊपर।

और मतलब गमले है यहां पे और इससे पता लग रहा है कि यह एक बच्चों का स्कूल है शायद--

और एक छोटा सा भी लगा हुआ है वो पर जूम करने पर दिख नहीं रहा और शायद पी_एन_बी बैंक का भी बोर्ड लगा हुआ है वहां पे--

और सारा घर का हाउसहोल्ड समान जो होता है वो भी यहां मिल रहा है और एक बंदा खड़ा है और वेट मशीन भी है।

यहां पे बोर्ड में लिखा हुआ है अम मोबिटेक क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड ।

लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं आई फोन की और यहां पे मतलब--

पर्लि यहां के बोर्ड लगा हुआ है व्यायाम शाला हिंदी मे और लिख इंग्लिश मे भी लिखा है ओपन जिम --

और और पार्किंग एरिया में बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है वाइट रंग की ब्लैक रंग की और रोड पे एक--

अ मंदिर में कोई वो कलर कूलर नहीं लगा तीन इमारतें सी ऊपर छोटी छोटी बनी पड़ी है।